और इसपे बड़े-बड़े टैंक्स रक्खे हुए हैं जिसमें कि हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं।

का कलर किस कलर के कागज है उसके आगे वो ग्रीन है और ऑरेंज है और ये बहुत ही मेहनत कर रहा है बच्चा।

ये जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं ये हॉस्पिटल की है जहां पे एक डॉक्टरों ने केम्प लगा --